आप इसमें घूम सकते हैं सेर कर सकते हैं और ये जहां भी जाना चाहे वहां जा सकते हैं ।

ये मकान का छत है। छत का ढलैया हो रहा है। यहाँ सारे लेबर मिस्त्री मिल कर इस छत काढ़लाईया किए हैं और ये हर साइज़ का बनता है।

जैसे कि आप देख रहे हैं कि छड़ बालू सीमेंट सब चीज से तैयार हो रहा है और ये हमारे निवास का हमा का मेन वो है।

आम ये क्या कहते हैं पेडीक्योर मैनीक्योर फेसिअल स्क्रब जो भी करना है। इसमे जाके लेडीज अपना काम करवाती हैं।

ये गिलास है इसमें आप तरह-तरह का एन लिक्विड मम पियो पदार्थ दे सकते हैं जैसे पानी पीजिए लस्सी पीजिए दूध पीजिए या मैंगो शेक पीजिए जो भी आप कर सकते हैं इसमें कर सकते --

कोई भी जिसका भी की कोई अअ अभिषेक हो रहा हो या कुछ इस तरह का वो बैठ सकता है इस बहुत बढ़िया सजावट इस स्टेज का और आप ये देख सकते हैं। यहाँ देखिये --